नक्शा इंजीनियर से बनाया गया है जो की --

ये एक फल का दुकान है जो की बहुत सारे --

ये एक यूनियन बैंक है जो कि --

और बहुत अच्छा लगता है यहाँ जिम करने में।

ए.टी.एम. से हम लोगो को बहुत सुविधाए मिलते हैं।

और ट्रेन से बहुत ही --

और इस तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछली निकलते है ।.

ए गाय भैंस को लाते हैं।